अदर लैंग्वेज में है नहीं समझ आ रहा है ऊपर साइड को कवर भी पड़े हुए है कुछ और ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ भी है।

ये स्कूल के बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं | ये सर्कल सर्कल वाला गेम है पता नहीं क्या बोलते है इसको लेकिन जो भी है काफी इंटरेस्टिंग है | और यह पे बच्चे है देखिये कित--

और ये पता नहीं क्या चीज उड़ रही है वाइट कलर में और देखिये दो के हाथ में बेट है इंडिया की टीम हो सकती है ब्लू ड्रेस मे--

ये किसी दरगाह या किसी मस्जिद का फोटो है जहा पे देखिये घडी लगी हुई है पंखा लगा हुआ है लाइट्स लगी हुई है और उर्दू में कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पे काफी सारे लोग भी है मौलाना है।

इसीलिए यहाँ पे इतने सारे लोग है विंडो हैं काफी सारी यहा पे | दीवारे है जो जिनकी छत्त पे रेड कलर के टाइल लगे हुए हैं पंखे लगे हुए है काफी सुन्दर लग रहा है।

ये एक लेडी है जिन्होंने गुलाबी कलर की साड़ी पहन रखी है उनके साथ एक बच्चा है जिसने काले शर्ट ब्लैक पैंट पहन रखी है।

ग्रील लगे हुए हैं लाइट्स लगी हुई है | नीचे कॉउं एं शीशे का दरवाजा है जिसपे ऊपर झालर लगी हुई है और होल्डिंग लगी हुये है।

जो उसको खींचने के लिए खड़े हैं मटीरियल को पीछे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं एक मजदूर के हाथ में पाइप भी नजर आ रहा है और सब लोग यहां काम में लगे हुए हैं।

इसमें कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं इसमें भ्रमण करते हुए और ऊपर शायद कुछ इसमें रंगाई पुताई भी हो रही हैं।